यहाँ पर एक शादी फंक्शन पार्टी का चल रहा है जहाँ पर एक आंटी एक अंकल फोटू खिचवाने के लिए खड़े हुए है पीछे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है नीचे लाइट जली हुई कैमरा दिखाई दे रहे है।

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।